तालाब के आसपास किनारों पर कुछ वृक्ष --

यह चलचित्र सिनेमा घर के अंदर से लिया गया है।

इस छायाचित्र में अलग-अलग अलमारियाँ दिखाई दे रही ।

एक दुकान किरयाना के अंदर से लिया गया है।

सभी विद्यार्थियों की सफेद रंग की वर्दी पहने हुए है।

यह चलचित्र एक डाक घर के सामने से लिया गया है।

यह छायाचित्र एक किराने के दुकान के सामने से लिया गया है।